यहां दो कूलर रखे हुए हैं थरमस भी हैं मिलते हैं मिक्सी भी मिलती हैं।

हैं और यहां पर एक और बॉक्स रखा हुआ है छोटा सा उसमें भी कुछ समान है पीछे एक टेम्प की तरह और कुछ रखा हुआ है।

ये एक विद्यालय है जिसमें बाहर की साइड पेड़ पौधे लगे हुए है और बैठने के --

ये कुछ लगे हुए हैं सेट की तरह और यहां पास में बाहर

जिसके चारो ओर एक लाइन खींची हुई है और उसके ऊपर दीपक रखे हुए हैं और छे सात महिलाएं --

जा रही है और एक के पेड़ है और ऊपर की तरह एक बनाया हुआ है घर और पास में खिड़कियां भी हैं।

ये फर्नीचर पर नीचे दो गेट रखे हुए हैं।

सफेद कलर का इसमें कुछ इनका सामान रखा हुआ है पीछे बैठने के लिए कुर्सियां भी बनी हुई है।

हैं जैसे रोलिंगों के माध्यम से बच्चे है आदान प्रदान करते हैं अपना फिर हम --

के ऊपर एक बैग रखा हुआ है और यहां एक डस्टबिन बनाया गया है और यहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं लोहे की रोलिंग लगी हुई है।

यह एक पौधा लगा हुआ है रेलिंग लगी हुई है पीछे टेबल कुर्सी रखी हुई है और यहां कुछ खंबे लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में सोपे लगाए हुए हैं और कांच लगाया हुआ है और ऊपर ए_सी लगी हुई है।